यह एक कंप्यूटर सेट की फोटो है जहां हम देख सकते हैं बहोत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं सामने कुछ कुर्सियां भी रखी हुई हैं लकड़ी का --

ये एक बुक सेंटर की फोटो है जिसमें देख सकते हैं की लकड़ीयों के कॉरिडोर बने हुए है जिसमें बहोत सारी बुके रखीं हुई है किताबें रखीं हुई है जिनमें से कुछ डिक्शनरी है इंग्लि --

जो कि काम कर रहा है और आगे की तरफ देखने पे पता चल रहा है कि--

दीवार दिखाई दे रही जिसमें कल्ले ग्रीन कलर का पेंट किया हुआ है पीछे की तरफ एक लकड़ी का कोई डोर और टेबल दिखाई दे रही है।

और आगे की तरफ देखने पर कुछ लाइट की पिलर भी दिखाई दे रही है सामने एक बड़ा पिलर लगा जिसमें निर्देश लिखा हुआ है की पार्लर गंदगी नहीं करनी स्वच्छ रखना है साफ रखना है।

यहां पर हम देखते हैं मैन गेट की फोटो जिसमें बेनर लगाओ जिसमें नाम लिखा हुआ है एस_बी_सी राजस्थान वहीं पिछली तरफ का गेट --

यह नागौर जंक्शन की फोटो है जहां हम देख सकते हैं नागौर के जंक्शन पे लगी हुई रेल पटरी की फोटो दिखाई दे रही है और सुबह शाम --

पुरुषों की डमीयां जिन पे टी शर्टें हैं और शर्ट पहना कर फोटो घिंची हुई है यहां सामने कुछ बुशर्टें और टंगाई हुई हैं शर्टें टंगाई हुई है।

इनकी फोटो घिंची हुई है आगे की तरफ भी है एक बहुत बड़ा मॉल है वहां अंदर लाइटिंग की गई है एक लकड़ी का काउंटर बै बनाया हुआ जिस पे एक आदमी बैठा हुआ है।

यह एक लकड़ी की कुर्सी है जिसको हम देख सकते सुंदर कलाकृति की गई यह कलाकृति बहुत ही पुरानी दिखाई दे रही है।

वहीं सामने कुछ व्यक्ति वर्कर और दिखाई दे रहे है जोकि काम कर रही और एक पीछे एक रेड कलर का टेंपो दिखाई दे रहा है।

यह फोटो श्री लक्ष्मी आटोमोटर्स की फोटो है मीलिएशन कंपनी कि है जोकि यहां पर हम देख सकते हैं टायरों का निर्माण किया जा रहा है वहीं सामने कुछ जवान --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

हॉस्पिटल के हॉल मे बैठने के लिए व्यवस्था की लिए कुछ कुर्सियां और सोफा की व्यवस्था की गयी है वपे एक पंखा लगाया गया है सामने गणेशजी की मूर्ति दिखाई दे रही है।

यह एक रेस्टोरेंट की फोटो है जिसमें हम देख सकते हैं कुछ टेबल लगी हुई है खाना खाने के लिए सामने तथा ऊपर सजावट के लिए फूल --

व्यक्ति बैठ सकता है वहीं लाइट प्लग दिखाई दे रहा है जहां पर एक चार्ज साथ लगाया हुआ है।